हरा रंग का उसमें भी डला हुआ है।

ये कुछ लगा हुआ है पिला--

वहां आदमी पड़े हुए हैं झंडा लगा हुआ है गुबारा है आदमी खड़े हैं लाल रंग का पीला रंग का --

कुर्सी हे सामने मशीन है और अगल-बगल गुब्बारा लगा हुआ है।

आदमी दिख रहे है गेट लगा हुआ है रूम है वहाँ उसमे माला लगा हुआ है ऊपर मे और सामान है दुकान उस दुकान का सामान दिख रहा है और गेट दिख रहा है तीन ठे दो आदमी है।

और ऊपर से डमरू जैसा करके ऊपर खड़े है और सीढ़ी बाय सीढ़ी मतलब डबल है चार है दो है ऐसे करके सीढ़ी में चढ़े --

ये फिल्ड जैसे दिख रहे है और बैट पकड़े है ये गेंद के तलाश में है।

सफेद है और टेबल पे भी सामान रखा हुआ --